एक बुजुर्ग महिला दिखाई दे रही है गाड़ियां दिखाई दे रही खड़ी हुई जिसमें हेलमेट टंगा हुआ है।

अ रिबिन्स लगे हुए दिखाई दे हो प फ्लावर टाइप में।

और एक टेमलेट वो लगा हुआ दिख रहा है।

अ और एक जलेबी का टुकड़ा अलग से दिख रहा बाकी तो अक्खी जलेबी दिख रही है।

पीछे एक वॉटरफॉल जैसा दिख रहा है एक क्रिश्चियन का स्कूल है ये--

और टेबल कुर्सियां दिख रही लग हुई हाथ धोने का वाशिंग है पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है।

अह उसके ऊपर एक ये जो वैसलीन टाइप का जो वो मॉइस्चराइजर क्रीम रेहता है वो रखा हुआ दिख रहा बादाम का।

यह एक अं दवाई का--

यह एक प्राचीन घर जैसा दिख रहा है या महल जैसा जहां पर--

आह उसकी भी सामने खिड़की खुली हुई दिखाई दे रहे है ढकन--

आह्ह दुकाने दिख रही है एक तोलने जैसा कुछ दिख रहा है कांटे जैसा --

यह एक नदी दिखाई दे रही है जहां पर कुछ लोग पूजा कर रहे हैं या अगरबत्ती लगाते दिख रहे हैं।

यह एक बेडरूम दिखाई दे रहा है खिड़की में पर्दा लगा है।

फिर पिल अह जाला आ रहा है धूप जैसा--

और सीए छाता अंब्रेला जैसा वो हैं पनिया पड़ी हुई हैं नीचे--

और ताला टंगा दिख रहा है गेट के ऊपर छोटा सा।

अ रस्सी से बांध कर रखा है उसे चेन से--

और पौधे लग रहे टमाटर के जिनमें कुछ दवाई छिपने का काम कर रहे हैं।

एक लेडिस है उम उ जिसने कपड़ा बाँधी है।

आसपास में खेत है जिसे खेत में पानी सप्लाई करते हैं उस टाइप से--

टेबल दिख रही हैं तार दिख रहे है इसके ऊपर रखे हुए पन्नी जैसा कुछ दिख रहा हैं।

यह एक ऑफिस दिखाई दे रही है। जहां पर कंप्यूटर माउस हैं। एक टेबल दिख रही हैं कुर्सी टेबल रखे हुए है।

जो की लंबाई में प्रदर्शित हो रहें हैं यहां--

यह किसी पार्क की तस्वीर नजर आ रही है जहां पर--